और यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं।

टेबल का कलर जो है वो ब्लैक कलर का टेबल --

बहोत सारे किताबें हैं लाइट है।

विंडो पर जो पर्दा है बहुत सुंदर कलर का है पिंक कलर का।

और लाइट और सीलिंग फैन बहुत सारे चीजें हैं।

दूसरी तरफ एक बहुत लम्बा ब्रिज है।

ये स्कूटी और बाइक का शोरूम है लगता है।

ऊपर जो बहोत सारे लाइट वगैरा है।

मिल्को एक लड़की भी दिखाई दे रही है।

इसमें बहोत सारे शैंपू वगैरह रखा हुआ है।

यह सुंदर कलर है फूलों का जो कलर है बहुत सुंदर है।

लगता है ये बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है।

यहां पर एक बहोत बिल्डिंग दिखाई दे रही है मेरे को बहोत सुंदर है।